और बाहर में बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है।

बहोत बड़ा फिल्ड है जहाँ पे बहोत गाड़ा गाड़ी लगी हुई हैं और बहुत बड़ा गाछी-उछी भी है।

एक बहुत बड़ा होल सेलर सा दुकान है जो खिलौने का है बहुत सारे खिलौना है।

बहोत सारे बॉल्ब भी लगा हुआ है बहोत सारे पंखा-उंखा भी लगा हुआ है।

बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और साइकल मोटरसाइकल भी बहुत सारा है।

आसमान एकदम साफ दिख रहा है।

और इस पे एक दो फूल भी है जो लाल कलर का है।

यहां पे एक किराना का दुकान है जिसमें हर तरह का समान बिक रहा है बहुत सारे लाइट लगा हुआ है।

बहोत बड़ा फील्ड है जिसमें चारों तरफ से हरियाली भरियाली से खेत है और एक पाइप भी रखा हुआ है और पानी पटाने वाला है।

यहां पे एक बहोत बड़ा फील्ड है जहां पे बहोत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं बहोत सारे लाइट भी लगा हुआ है।

जो ब उसकी पत्तियां हैं हरा हरा सा है।

खा हुआ है और बहोत सारे पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां से एक सरक गया है जहां पे एक दुकान उकान भी है और एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है।

और बहुत सारे साइकिल मोटरसाइकिल भी लगा हुआ है।

एक गाड़ी है जो गाड़ी के पकड़ के आदमी खरा है एक बैठा हुआ है।

यहां पे बहोत भीर है जहां पे डांस हो रहा है और--

एक बहोत बड़ा बिल्डिंग हैं जिसका कलर है लाल कलर का है।